चबूतरा दिख रहा है जिसपर नीली छत डली दिख रही है। सफ़ेद काला आकाश दिख रहा --

इस चित्र में बड़ा तालाब दिख रहा हे सड़क दिख रही --

ये चित्र भी किसी शिक्षण संस्थान का दिख रहा है।

यहाँ पे इस चित्र में एक पद्गामिनी दिख रही है और एक चबूतरा दिख रहा है। जिस पर एक पुलिसवाला दिखाई दे दे दे रहा है।